चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक बड़ु बारिकु कमरा छ दिखेण यखम एक कपड़ो वाले की दुकान कर छ लग्ण लगीं।

का अनुसार यख मा जी जू च हम त एक कमरा कर छ दिखेणु यख मा जी दिखणा मा कुई मैकेनिक वाला की दुकान कर भी लगण लगीं।

यख मा जी दुई ऑटो रिक्शा विक्रम छन रखीं यख मा जी पेटी छ दिखेण लगीं यख एंच पंखा भी छन लग्यां।

यख मा जी पिछाड़ी यु एक ऑटो रिक्सा विक्रम कु शोरूम कर छ लग्ण लग्युं यखा पिछाड़ी कई सारो सामान छ रख्युं पिछाड़ी फनी पेटी छन दिखेण लगी टिन कु छप्पर छ दिखेण लग्युं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक मयूरी छ दिखेण लगीं यख मा जी या लाल रंग की छा।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक लाल रंग की ऑटो रिक्शा विक्रम कर छा दिखेण लगीं।

यख मा जी एक बड़ु बारिकु टेबल कर छा रख्युं यख दीवाल मा जी एक बोर्ड कर छा लग्युं यखम मा जी तार भी छन दिखेण लग्यां।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक दुकान छ दिखेणी या दुकान देखणम कोई कॉचिंग सेण्टर या साइबर कैफ़े कर छ लगण लग्युं।

यख मा जी काला रंग का सिसा छन लग्यां यख मा जी फूलों का झालर छन यखम बोर्ड कर छन लग्यां भितर हमारा भारत देश झंडा छन छोटा छोटा लग्यां।